एक होटल जैसा दिखाई दे रहा है होटल में कुछ कुर्सियां--

पेड़ पौधे भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे है।

और ऊके आगे एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

बगीचा में तरह तरह के फूल दिखाइ दे रहे हैं।

चीज़ें भी दिखाई दे रही है नाम जपो प्रेम करो ऐसा दिखाई दे रहा है और एक फूल बना हुआ है।

इसमें रेड और व्हाइट गुब्बारे लगे हुए हैं एक दो तीन कुर्सियां डली हुई--

कुछ काम कर रहे हैं कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं और--

एक ट्रक जैसा लग रहा है जिसमें इतने सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

हरे भरे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।